यहाँ पर एक टीचर पढ़ाती हुई दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर खिड़की दिखाई दे रही है।

और यहाँ पर पीड़ पौधे दिखाई दे रहे है और ये यहाँ पर आसमान दिखाई दे रहा--

मुझे यहाँ पर बहोत सारे आदमी दिखाई दे रहे मुझे यहाँ पर पहाड़ दिखाई दे रहा है।